और नीचे उसके टायरों में हमें पत्थर लगे हुए हैं और एक मशीन पास में रखी हुई दिखाई दे रही है।

और नीचे जमीन पर बहोत सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ--

तस्वीर एक झोपड़ी बनी हुई है और एक सफेद बोर्ड और साइकिल हमें रखी हुई दिखाई दे रही है एक कुर्सी--

और एक ये फोटो फ्रेम की तरह दिखाई दे रहा है।

और दूर तक हमें पहाड़ पानी भरा हुआ--

हरी हरी घास और दूर हमें स्टेडियम की सीढ़ियां बनी नजर आ रही हैं और मैदान में--

और हमें चारों तरफ अअ कमरे खिड़कियां और रेलिंग लगलगी हुई नजर आ रही है।

अहमें विलगा हुआ दिखाई दे रहा हैअअ--

और हमें दूर गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दे रही हैं और एक यह बिल्डिंग बनी हुई नज़र आ रही है।

अ रेलिंग लगी हुई चमकती हुई दिखाई दे रही है।

और हमें एक रस्सी पर कपड़े भी फैले हुए दिखाई दे रहे हैं टंगे हुए और दूर हमें एक बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही है।

और बहुत सारी प्याज की बोरियां भी हमें अअजमी हुई सड़क के ऊपर दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर के अंदर हमें अअ डेकोरेशन वाली पूरी कुर्सी पर--

हमें दिखाई दे रहा है टॉप संडेस लिखा हुआ है आइसक्रीम का ये कोन बने हुए हैं।

और ये बड़ी सी मस्जिद बनी है जिसका गेट पर भी हमें--

और झंडा हमें लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में हमें बहोत सारी अं महिलाएं और बच्चियां दिखाई दे रही हैं एक बीच में झंडा लिए हुए एक आदमी भी खड़ा हैं।

पीछे नीले पर्दे लगे हुए हैं जिस पर एक बैनर लगा है।

एक डस्टबिन और दो गाड़ियां हमें खड़ी नजर आ रही हैं।

एक आदमी भी दूर खड़ा हुआ नजर आ रहा है और पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और हमें तालाब में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

और सीढ़ियों से उतरते हुए हमें दो आद एक आदमी और एक औरत दिखाई दे रहे हैं।

अअनीचे हमें दो कुर्सियां लगी हुई और टेबल लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर--

और टेबल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं खिड़की के पास।

चारों तरफ हमें गुलाब और और भी फूल लाल गुलाबी--

एक आदमी ओर औरत हमें अ अअ दिखाई दे रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ।

और स्टूल पे रखे हुए हमें ये तबला दिखाई दे रहा है।

और हमें संजय लिखा हुआ बोर्ड भी नजर आ रहा है।